मुझे इसमें एक कोचिंग क्लासेस दिख रही है।

मुझे इसमें एक कंप्यूटर दिख रहा है।

मुझे इसमें बहोत सारी दुकानें दिख रही है।

मुझे इसमें एक खड़ी हुई कार भी दिख रही है।

मुझे इसमें सजा हुआ शादी का एक मंडप दिख रहा है।

मुझे इसमें फूलों का डेकोरेशन दिख रहा है।

मुझे इसमें एक डस्टबिन दिख रहा है।

मुझे इसमें एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल दिख रहा है।

मुझे हॉस्पिटल का फर्स्ट डोर खुला हुआ दिख रहा है।

इसमें मुझे बिल्डिंग के पास लगा हुआ एक पेड़ दिख रहा है।

इसमें मुझे दुकान में लगे हुए चिप्स कुरकुरे के पैकेट दिख रहे हैं।

इसमें मुझे दुकान में लगाया हुआ टेबल फैन और एक टेबल दिख रही हैं।

इस मंदिर में मुझे बहोत सारी जलते हुए दिए एक पंक्ति में दिख रहे हैं।

इसमें मुझे दीवारों में फूल का सजा हुआ डेकोरेशन दिख रहा है।

इसमें मुझे बहोत सारे लोग दिख रहे हैं।

इसमें मुझे बहोत सारे लोहे के खंबे भी दिख रहे हैं।

मुझे स्टोर रूम में बहोत सारा लोहे का समान दिख रहा है।

इसमें मुझे एक रूम दिख रहा है।

इसमें सोफा कवर अटैची कवर फैंसी सीट कवर भी उपलब्ध हैं ऐसा दिख रहा है।

इसमें मुझे शारदा मेडिकल स्टोर्स दिख रहा है।